बहोत ही अच्छा और बहोत ही सुंदर जगह --

यह एक बिल्डिंग दिख रहा है सफेद कलर का जो की बहोत ही सुंदर है नीचे में दुकान है ऊपर में घर है।

यहां का बस स्टैन्ड का बात ही अलग है।

यह एक मस्जिद है। बहोत ही सुंदर मस्जिद है। यहाँ कि लाइटें यहाँ कि लाइटिंग यहाँ बनावाटी बहोत ही शानदार बहोत ही खूबसूरत है।

सब आदमी यहां यहां का वातावरण यहां का हवा बहुत ही स्वस्थ और अच्छा हो रहता है।

माँ की आँखे माँ की चुनरी माँ की लीला अपरंपार है। जय माता दी।

यहाँ सारे बच्चे डिसप्लिन में दिख रहें हैं। बहुत ही सुंदर बच्चे हैं।